तो एक आदमी पान बारिश की वजह से भाग रे हैं और एक यहां पे बस और गाड़ी जा रही है।

यहां पे वॉटरफॉल लग लहा है और--

इस इमेज में यहां पे दो आ--

यहां पे कुछ गाड़ियां रुकी हुई है कुछ गाड़ियां चल रही है यहां पे बहोत सारी दु--

इस इमेज में एक ग्राउंड है और बहुत सारी हरियाली छाई हुए है पीछे एक मस्त सा मंदिर है और यहां पे बहुत सारे --